एक बस दिख रही है बस का जो कलर है वह वाइट और ऑरेंज कलर का दिख रहा है और ये एक बस स्टॉप है और एक पर्सन खड़ा हुआ दिख रहा है जिसने जेकेट पहन रखा है और ब्लै ब्लैक कलर का बेग टांग के रखा हैं।

और आस पास में काफी सारी बिल्डिंगस भी दिख रही है एक वाटर टैंक दिख रहा है जो कि येल्लो दिख रहा है और एक ब्लैक कलर का दिख रहा है कुछ पौधे दिख रहे हैं पैर दिख रहे हैं जो हरे कलर के दिख रहे हैं।